ये एक सैलून शॉप है जो बहुत ही ज्यादा देखने में अट्रैक्टिव लग रही है इस यहां पर एक ए_सी लगा रखी है।

ऊपर के साइड में दो लाइट जल रही हैं जो रिफ्लेक्ट कर रही होंगी नीचे के पूरे शोरूम को।

यहां पर एक वाइट कलर की गाड़ी भी खड़ी हुई है और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो कान पर फोन लगाया हुआ है।

मंदिर को काफी अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है और बहोत ही अच्छी पेंटिंग भी दिख रही है।

ये एक महा उत्सव जैसा फोटो दिखाई दे रहा है जहां पे बहुत सारे लोग नृत्य कर रहे हैं।

इसकी बहोत सारी कागज या फिर बिल वगैरह साइड में रखे हुए हैं।

पांचवीं ने स्काई ब्लू कलर का और जो छठी है उसने ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी है।

इन्होंने लेफ्ट के तरफ अपना पूरा मेनू लगा रखा है दुकान के बाहर।

और नीचे की साइड वाटर पार्क जैसा है जहां पर बहोत सारा पानी है।

की तरफ एक पूरा रास्ता चला जा रहा है जो अनंत काल में जाएगा।

यह एक सलून की दुकान है जिसका नाम न्यू ताज हेयर सलून है।

दुकान के बाहर हाथ धुलने के लिए एक सिंक भी रखी हुई है।

ये एक फिजियोथैरेपी सेंटर है जहां पर पेशेंट को ऑपरेट करने के लिए एक स्ट्रक्चर रखा हुआ है।

ऊपर पेशेंट्स को ऑपरेट करने के लिए डॉक्टर बैठते हैं।

यहां पर काफी खिलखिलाती हुई धूप भी है और मौसम एकदम साफ है।

अंदर तक पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां हैं जिन सीढ़ियों का कलर वाइट कलर में हो रखा है।

इस तरफ एक स्ट्रीट फूड वाला है जहां पर भी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं कुछ न कुछ खाने के लिए।